और इधर बहुत सारे चट्टानें भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे पानी भी बारे हुए है साइड मे जंगल हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहे हैं और बदल भी घेरे हुए है।

ये जैसे लग रहा है गांधी मैदान का दृश्य देखने को मिल रहा हैं।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

बहुत बाड़ा एक मेदान भी दिखाई दे रहे है|

और की फोटो क्लिक किए हुए--

और साइड में दो पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

मुझे अच्छे तरह से देखने को मिल रहे हैं।